एक पहाड़ी इलाका है यहां पर ये एक बहुत बड़ा पेड़ है।

वहीं रास्ता है उपर जाने का वह एक स्टेयर्स है।

दालमोट की पैकिटे रखी हुई है।

काफी सारे वायर जा रहे हैं दूसरी तरफ।

और काफी सारे पोस्टर लगे है।

ये काफी सारे आइटम लिखे लगे हो बने हुए हैं जैसे कि दूध दही जूस कोल्डड्रिंक --

एक ग्राउंड है यहां पर एक जिराफ है।

बहुत सारी घासें हैं थोड़ी सी दूर पे और छो छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं।

और इसी के पीछे एक मस्जिद है जहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं।